तार का पेड़ काफी दिखाई दे रहा है अगल-बगल में तार का पा पेड़ दिखाई दे रहा है पानी में कचरा भी दिखाई दे रहा है।

टैडर्स टैडर्स है कोई मॉल है टैडर्स का मॉल नाम है टैडर्स का और ये बाहर से मतलब अंधेरा अंधेरा टाइपस् से दिख रहा है लेकिन ऊपर में जो भी लाइट लगी है उससे टैडर्स दिख रहा है व्हाइट कलर से--

ये कोई डॉक्टर सुंधांशु मतलब यहाँ किसी चीज़ की तैयारी की जाती है दो झंडा दिख रहे गेट दिख रखे अंदर में एक लेडीज लड़का या लड़की बैठी हुई है पेड़ दिख रहे है तार का--

आइए टेम्पल ए टेम्पल दिखाई दे रहा है बगल में बहुत सारे तार का पेड़ दिखाई दे रहा है एक और घाना पेड़ है।

आगे से बाउंड्री किया हुआ है गेट जो रेड कलर से पेंट किया हुआ है गेट के सामने जो बाउंड्री सामने छोटा -छोटा घास दिखाई दे रहा है अंदर में जो टेम्पल जो पाया दिया हुआ है वो रेड कलर से पेंट किया हुआ है।

दूर-दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है बस झंडा दिखाई दे रहा है बांस में लटका करके --

अ झाड़ू झाड़ू दिखाई दे रहा है कददू दिख रहा है बाल्टी दिख रहा है पपीता दिख रहा है झोला दिख रहा है बॉल दिख रहा है।

यहाँ पे टेंपल दिखाई दे रहा है टेंपल के चारो तरफ अ- गेंदा के फूल से माला बनाकर के लटकाया हुआ है ऑरेंज कलर का टेंपल का पेंट किया हुआ है।

बगल में कचरा का डब्बा दिखाई दे रहा है एक आदमी है जो टाइलस फेक रहा है बगल में ऑरेंज का तिरपाल से घिरा हुआ है आस पास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बाउंड्री --

यहाँ पे बीच में गोल सा कुछ बनाया हुआ है वहाँ पे एक बच्चा है गोल वाले में खड़ा है एक पेड़ दिख रहा ब्लैक ब्लैक कलर का चारो तरफ धुआँ धुआँ सा दिख रहा है।

उसके चारो तरफ छोटे छोटे घास है जिसको शेप किया गया है उसको काटा गया है फिर छोटा छोटा पेड़ है उसके सामने सीसा का बिल्डिंग दिख रहा है और स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है बाइके चल--

और उसके पीछे बस आ रही है पेड़ दिख रहे है और बैनर दिख रहा है।

और आगे गेट दिखाई दे रहा है आगे जो ये बगीचा है उसमे छोटे-छोटे घास दिखाई दे रहा है एक आदमी है जो आ रहा है।

ये चौड़ी सड़क दिख रही है पंद्रह से बीस फीट का रास्ता दिख रहा है जिसपर दो बच्चे लोग चल रहे हैं।

यहाँ पे फल बिक रहा है फल में अ नारंगी है अ सेब है अ_अ अनार है आम है।